इसमें एड्रेस के रूप में चौबे मार्केट द्वितीय तल सागर रोड ललितपुर उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है।

जिसका कॉन्टैक्ट है दो आठ चार चार शून्य तीन।

गैराज के अंदर एक बड़ी सी मशीन लगी हुई है मशीन में मोटर लगे हुए हैं।

सामने बड़ी सी हाल है जिसमें बड़े सोफे रखे हुए हैं।

यहां पर एक पक्के मकान दिखाई दे रहे हैं जहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं।

कमरे के भीतर एक बड़ी सी खिड़की है लेडिस के ठीक ऊपर एक जैकेट लटका हुआ है।

यह एक पुस्तक की दुकान है जिसमें तरह तरह की विभिन्न प्रकार की पुस्तकें रखी गई है।

होम में सीलिंग के पास कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं।

यह एक ऊंची पानी की टंकी का कॉलम है।

कमरे में ए_सी और वाटर बैग भी है कुछ अन्य पोस्टर्स भी लगे हुए हैं।

और कुछ लोग मोमबत्ती को हाथों में लिए हुए खड़े हैं।

टेबल पर बहुत सारी महिलाएं एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही है।

एक व्यक्ति है अपने हाथ में एक थैला लिए हुए खड़ा है।

पीछे की ओर गेट लगे हुए हैं साथ ही चर्च के कुछ पादरी भी हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं।

यह एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम शिव शक्ति एन_एच फोर्टी फोर फास्ट फूड रेस्टोरेंट --